बड़ी बड़ी शहरों मे रहा करती है।

यह एक रेस्टोरेंट है फाइव स्टार रेस्टोरेंट।

यहाँ उच्च शिक्षा की --

खरीदते दिनचर्या के लिए खरीदते हुए और कुछ --

हम्म उसमे पठन-पाठन का कार्य होगा तथा इसके नीचे स्कॉर्पियो तथा स्कूल बस लगी हुई है।

बैंक का ब्रांच शाखा है इसमे बंधन बैंक के स्टाफ सब --

बैठे हुए तथा इसके बगल में बंधन बैंक का ए.टी.एम. है।

म्म बहुत सारे चेयरें लगे हुए डाइनिंग टेबल लगे हुए।

यह एक प्लेग्राउन्ड है।